खिड़की में कांच लगा दिखाई दे रहा है दो एग्जिट फैन लगे दे रहे हैं दीवाल दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहे हैं एक ऑरेंज कलर की पट्टी बनी दिखाई दे रही है।

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे एक जे.बी.सी आती हुई दिखाई दे रही है किनारे हरे हरे घास दिखाई दे रही है सामने एक घर दिखाई दे रहा है जिसमे सामने शटर ही शटर दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं सामने बहोत सारे आदमी बैठ दिखाई दे रहे हैं दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं एक टेबल डला दिखाई रहा है एक दादा खड़ा दिखाई दे रहा है।